इस बिल्डिंग में काफी सारे कांच लगे हुए हैं और आइट साइड काफी बड़े पेड़ हैं।

हमारे सामने स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही हैं।

सामने एक बोर्ड दिख रहा है। जिसपे फुगे लगे हुए हैं।

यहाँ हमारे सामने स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रहीं है जो एक बिल्डिंग के अन्दर की है यहाँ पर नीचे --

बिल्डिंग के नीचे ही एक गार्डेन बना हुआ हैं। जिसमे घास और थोड़ी-थोड़ी दुरी पर गमले रखे हुए हैं। रोड पे कुछ कार भी खड़ी हुई दिख रहीं --

यहाँ पे क्यारियां भी बनी हुई हैं रोड पर पाथवे भी दिख रहा है |

गेट के इंट्रेस पे ही काफी सारे गेंदे के फूल की माला टंगी है।